बकरी का रंग सफेद वे काला है बकरी घास के ऊपर बैठी हुई है।

इधर ग्राउंड में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की घास दिखाई दे रही है।

नीचे घास दिखाई दे रही है लगता है इधर कोई गाड़ी गई है जिसके निशान इधर है।

गाड़ी के ऊपर बहुत सारे लड़कियों के चित्र छपे हुए हैं घर के आगे एक मटका भी रखा--

जहां एक छोटी बच्ची अपने बगीचे में पानी डाल रही है।

प्लास्टिक का सामान व पाईप डेक्ची लाइटर वगैरह--

यह तस्वीर एक दुकान की नजर आ रही है जहां बहोत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं इधर इस --

यह तस्वीर एक खम बिल्डिंग की नजर आ रही है यह तस्वीर एक--

योगा में हीं प्रैक्टिस दिखाई जा रही है।